और पीछे काले रंग का कुछ ड्रावर की तरह बना हुआ है।

पीछे लाल रंग का कुछ रखा है दीवार में पंखे लगे हुए हैं सब--

इधर हरे रंग का पेड़ दिखाई दे रहा है बड़ी सी लोहे का उसमें दिखाई दे रहा है जाली टाइप का लगा हुआ है।

एस_बी_आई लाइफ इंश्योरेंस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मकान भी दिख रहा है पीछे पेड़ है कार है लाल कार है।

टैंपू से लोग हैं कुछ बाइक से हैं कुछ साइकिल से जा रहे हैं लोग अगल-बगल कुछ --

एक कार खड़ी दिखाई दे रही बस भी दिख रहा पीले रंग का कुछ--

मेरे जो ऊपर टिशू पेपर रखा हुआ है हाथ पोंछने के लिए ऊपर झूमर है कुछ--

बॉर्डर है कुछ मकान पे चिपका हुआ दिख रहा है इस साइड गुलाबी कलर का कुछ दिखाई दे रहा है।

और कुछ ड्राइवर पे कुछ सारे सब लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं।